इस फोटो मे तीन शेरवानी दिखाई जा रही है जिनसे ये प्रतीत होता है कि यह शेरवानियों की एडवरटाइजमेंट के लिए दर्शायी गई है।

एक कीपर है और एक बैट्समैन है और तीन गल्ले भी नजर आ रही है जिनसे जिन्हें स्तंभ कहते हैं जिनके बॉल टच होने पर वह आउट मान लिया जाता है।

पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है और पीछे की ओर बिल्डिंगे और एक ग्रीन कलर का पेड़ भी नजर आ रहा है।

ये हमारे देश की धरोहर है।

कि हमारे यहां ऐसी ऐसी टी शर्ट ही मिलती है।

प्रदर्शन किया गया है या फोटो खींची गई है और इसका उद्घाटन आज ही हुआ है तभी इतने सारे बैलून लगे हुए है।

मनोकामना मांगते हैं ताकि भगवान उसे पूरी कर सके इसी श्रद्धा से लोग यहां आते हैं।

पत्थर की फोटो है जहां पर एक लड़का बैठा है और वह सामने के नजारे को एंजॉय कर रहा है पत्थर काफी अच्छी तरीके से और --

बनाई जाती है ऊपर काफी सारे बैलून नजर आ रहे है ये तो चिपकाए गए हैं या हाइड्रिल हिलियम गैस से भरकर ऊपर उड़ाए गए हैं।

क्रीम कलर से है ये अपार्टमेंट भी हो सकते हैं जहां लोग रहते हैं किराए से या खरीद कर।